आस पास हरियाली छाई हुई है और एक नदी भी बहती दिखाई दे रही है।

एक ऑटो में कई आदमी बैठे हुए हैं और कई कारे खड़ी हुई हैं।

और काफी अच्छा दृश्य है लाइट जल रही है।

ये एक गुजराती नृत्य करते हुए कार्टून की फोटो दिखाई दे रही है।

आसपास पेड़ पौधे भी हैं दिन का समय दिखाई दे रहा है।

यह एक ऊंची पहाड़ी या चट्टान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आस-पास बहोत सारे लाल और नि मेहरून रंग के फ्रिज रखे हुए हैं।

सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें काफी सारी लाइटें जल रही हैं।

कई सारे पत्थर अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए है।

गोदाम के पीछे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जागरण का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे भगवान जी बैठे हुए हैं।

मंदिर के गेट पर तीन चार औरतें दिखाई दे रही हैं।

यह एक रेस्टोरेंट के खाने की प्लेट दिखाई दे रही है।

सामने एक आदमी हरे रंग की थैली में कुछ सामान लेकर जा रहा है।